ईंटे के कुछ बने हुए हैं जिस पे हम इंसान पूजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि दुकान के पास रखे हुए नजर आ रहे हैं।

दो पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे हैं।

और एक सामने में पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में सैमसंग का एक छोटा सा शोरूम दिखाई दे रहा है।

अंदर में ढेर सारी लाइट जलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक बड़ा सा शटर भी लगाया गया है।

फोन भी ऊपर में दिखाई दे रहा है और यहां पर ढेर सारी रैके बनाए गए हैं।

और साइड में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

पे ढेर सारे बेड लगाए नजर आ रहे--

और यहां पे कुछ पोस्टर भी लगाए है ऊपर में ढेर सारी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

पी दिखाई दे रहे हैं।

उसके बगल एक कुर्सी होगी दिखाई दे रहा है।

यह कलर किया गया है।

बॉक्स के लिए ढेर सारी पट्टे रखी हुई है जो उनके गले में बांधने के लिए काम आती है।

इस दृश्य में एक कार का सर्विस सेंटर का दृश्य नजर आ रहा है।

आसपास में कुछ बैनर भी चिपकाए हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े बोड़े और कुछ के बिस्किट रखे हुए नजर आ रहे हैं।

एक टेबल पर रखा गया है।

ऊपर में ढेर सारे ड्रम दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं।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

पे कुछ मेहंदिया भी दिखाई दे रही जो निशा की है।

सामने में कुछ पेड़ बने हुए नजर आ रहे हैं।

ढेर सारे बालू एवं मिट्टी दिखाई दे रहे हैं।

इश्के बस लोहे लोहे की कुछ चीजे भी रखी हुई नजर आ रही है।

और उसके बगल में ढेर सारी तारे इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रीन --

पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाई दे रहा है।

छोटा सा बोट भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे तीन बड़े बड़े बोड़े रखे गए हैं।

यहां आस पास में एक ग्रिल है।

कुछ बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ जग में कपड़े रखे हुए हैं और एक बेसिन बनाई गई है।

ऊपर में आसमान में दिखाई दे रहा है।

जो रेड कलर में रखे हुए हैं।

और यहां पे आस पास में बैलून लगे हुए हैं।

और सामने लकड़िया भी दिखाई दे रही हैं।

और साइड में कुछ कार्टून बने हुए नजर आ रहे हैं यहां पर ढेर सारे प्लास्टिक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक इंसान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में ढेर सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो रखे हुए नजर आ रहे--

यहां पे ढेर सारी पानी दिखाई दे दे रही है।

और यहां पे ढेर सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए हैं।

और यहां पे बाहर में दो बाईकें खड़ी की गई हैं।

इश्के बस लोहे लोहे की कुछ चीजे भी रखी हुई नजर आ रही है।

सीढ़ी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है जिसके में रेड कलर का मैट बिछाया गया है।

और नीचे में एक लेडी भी दिखाई दे रही है।

आर के पब्लिक स्कूल दिखाई दे रहा--

उसके साइड में एक बड़ा सी बाउंड्री बनाई हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

बगल में टिशू पेपर पर रखा हुआ है कुछ बड़े बड़े गिलास भी दिखाइए दे रहे हैं।

आसपास ढेर सारी स्टार ऊपर में कुछ लाइटें लगी हुई नजर आ रही हैं।

कुछ बाईकें दिखाई दे रही हैं।

एक लाल तार शो हो रहा है।